ये उम्म स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है जहां कुछ लोग लाईन लगाए हैं पैसे उठाने लिए ‌ ए.टी.एम. से और कुछ लोग पैसा उठा के ए.टी.एम. से आ रहे हैं।